ये एक चर्च का सीन है जिसमें एक लड़का खड़ा है जिसने पिंक शर्ट पहना है और पंखे लगे है।

ऐसा लग रहा है यहां किसी प्रतियोगिता प्रतियोगिता की किताबे है और सामने एक स्कूटी भी--

और एक रेलिंग लगी है बिच मे एक नरीयल का पेड़ लगा है ओर एक टावर भी दिख रहा है कुछ आटो भी खड़ी है ओर लोग वहा से आ जा रहे है।

पे इस पर ग्रीन कलर का पेंट किया गया है दीवारों पर और ऊपर लाइट्स भी जल रहे हैं और पंखे भी चल रहे हैं।

यहां पर बहोत खूबसूरत पार्क दिख रहा है जहां पर बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं एक पोर्च भी है और उस पे एक फिसलनी बनी हुई है।

ये कार पुरी व्हाइट दिखाई दे रही है कुछ लोग खड़े हैं और कुछ लोग जमीन पर बैठे हैं।